ये पेट्रोल पंप है जहाँ पे कुछ लोग अपनी गाड़ी मे पेट्रोल भरवा रहे है जहाँ दो एक सफ़ेद कलर की एक काले कलर की फोरेव्हीलर खड़ी है।

यह स्कूल की बसे है और बिल्डिंग काफी बड़ी बनी हुई है स्कूल की--

घास दिख रही है काफी बड़ी सी नीली पीली सी बिल्डिंग दिख रही है।

यह सामने एक रोड टाइप की दिख रही है उसके सामने बहोत बड़ा घर बना दिख रहा है पिंक पिंक से फूल दिख रहे है।

बहुत बड़ा हरा झाड़ दिख रहा है नीचे छोटी-छोटी सी घासे उगी दिख रही है लाल-लाल सड़क दिख रही है।

यहाँ पर एक हाथी दिख रहा है जो अपनी शुंड उठा कर हाथी का स्टेचू बना दिख रहा है जो अपनी शुंड ऊपर उठाए हुआ है ।

यह एक बहोत ही बड़ा कॉलेज है ईसपे कोलेज के बिलकुल सामने एक स्टेचू बना हुआ है।

जो फोटो कॉपी की दुकान है यहाँ पर बहुत सारी फोटो कॉपी लगीस दिख रही है।